उस बाईसाइकल पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने व्हाइट रंग की टी-शर्ट और ब्लैक रंग की पेंट पहन रखा है| और यहा पर एक ग्रील है जो रेड कलर की है| और यहा पर एक पताका लगा हुआ है जो उसके छत पे लगा हुआ है।

--दिख रही है जो व्हाइट कलर की है| यहा पर एक व्यक्ति दिख रहा है जिसने धोती पहन रखी है| उस धोती का कलर पिंक कलर का है| और उसने येल्लो रंग की टी-शर्ट पहन रखी है| यहा पर एक और व्यक्ति है।

--आन दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है| यहा पर जमीन दिख रही है| जो रोड है वो व्हाइट कलर की है| यहा पे दीवार दिख रहा है वो व्हाइट कलर का है| यहा पर बस दिख रही है वो व्हाइट कलर का है।

व्हाइट कलर का है। यहा पर बहुत सारे बेनर टंगे हुये है| बेनर को रेड ब्लू कलर से बनाया गया है। यहा पर रोड दिख रहा है| जो यहा पर आसमान भी दिखर रहा है जो नीले कलर --

यहा पर एक व्यक्ति है जो बाइक पे बैठा हुआ है | वो भी बाइक चला रहा है| यहा पर आसमान दिख रहा है जो नीले कलर की है| यहा पर एक मकान दिख रहा है।

इधर ही बाइ और स्कूटी है| ए स्कूटी का कलर रेड कलर है | यहां पर बाइक का कलर ब्लैक कलर का है| यहां पर एक व्यक्ति है जिसने नीली कलर की टीशर्ट और ब्लाक रंग का पेंट पहन रखा है| उसे व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा है।

ये ब्लू और रेड है| यहा पे आसमान दिख रहा है जो वाय व्हाइट कलर की है| यहां पर सीढ़ी भी दिख रही है| यहा पे जमीन भी दिख रही है| यहा पर एक पोल है।

सीढ़ी पर एक बैनर रखा हुआ है जो ब्लैक रंग का है| यहां पर मकान भी दिख रहा है| यहां पर आसमान भी दिख रहा है जो नीली कलर की है| यहाँ पर पेड़ भी दिख रहा है| पेड़ के पत्ते ग्रीन रंग के हैं।

यहाँ पर आसमान दिख रहा है| यहा पर एक पोल दिख रहा है| पोल जो है का आधा ही भाग दिख रहा है।

टेंपू दिख रहा है जो ब्लैक रंग का है| यहा पर जो बाइक है वो दो है| यहा पर एक शटर है।